इस चित्र में रेलवे स्टेशन दिख रहा है।

छत के ऊपर एक गुंबद बना हुआ दिख रहा है।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

एक पुल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

यहां पेड़ पर बहुत सारे झालर लगे हुए हैं।

इस मशीन के आसपास छोटे छोटे कील पड़े हुए हैं।

जो अभी सही से नहीं लगी है।

साइकिल खड़ी हुई है एक लड़का साइकिल पर बैठा हुआ है एक आदमी नीले रंग की कुर्ता पहना हुआ है।

मैदान में बहुत सारे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं।

चर्च के ऊपर क्रॉस बना हुआ है।

चिकन सेंटर के बाज़ू में एक होटल है जिसका नाम होटल गरीब नवाज है।

इस चित्र में अजंता डेयरी दिख रहा है।

यह चित्र एक बर्तन की दुकान की है।

यह चित्र एक नाऊ की दुकान की है।

यह चित्र में समोसा आलू बंडा मिर्ची और कचौड़ी दिख रहा है।

एक प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें मिर्ची का पाउडर है।